यहां लिखा हुआ है कमिस्ट दवाइयां।

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक बहोत बड़ा ड्राइंग रूम है।

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक कॉस्मेटिक की दुकान है यहां पर रिच क्रीम गार्नियर कलर और बनाना क्लिप --

और यहां पर हम देख सकते हैं लिपस्टिक चूड़ियां दिख रही है और ऊपर की साइड परफ्यूम की डिबिया शैंपू देख सकते हैं।

नेकबैंड स्मार्टवॉच और काफी सारे मोबाइल्स चार्जर --

और लाइन में बच्चे यहां पर जंप करते हुए दिख रहे हैं।

औरतों की यहां पर हम ड्रेसे लहंगे सूट देख सकते हैं।

चार गाड़ियां हम यहां पर खड़ी हुई देख सकते हैं।

जहां हम देख सकते हैं कि यह एक सुपर मार्केट है।

और यहां पर बाकी आगे भी बड़ी सी दुकान दिख रही है।

यहां हम देख सकते हैं कि यहां पर दो तीन बसे एक खड़ी हुई है।

यहां पर डूबता हुआ सूरज हम देख सकते हैं।

गिटार बजा रहे हैं लोग उन्हें खड़े होकर देख रहे हैं सामने कैमरा चलता हुआ दिख रहा है।

सामने एक बड़ी सी खिड़की देख सकते हैं जिसमें शीशा लगा है।

यह हम देख सकते हैं कि यह एक कपड़े की दुकान है जिसका नाम लाल एंड सन्स है।

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक रेस्टोरेंट है।